बहोत बड़ी फूलों की शॉप है।

आप देख सकते--

और जैसा कि आप देख--

सफेद हैं यहां पर एक--

एक बहोत सारे लोग--